यहा एक जगा है जहा पर बहुत सारे कपड़े दिखाई दे रहे है।

यह एक जगह है उस जगह पर एक बहुत बड़ा किला नज़र आ रहा है।

और कुछ कपड़े टंगे हुए हैं और कुछ कपड़े रखे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ एक जगह है जहाँ पर एक बहुत बड़ा दुकान है दुकान मे कुछ चीजे टंगी हुई दिखाई दे रही है।

और वहा पर बहुत सारी मूर्तिया बनी हुई है मूर्तियो का रंग काला है और वहा पर कुछ डिजाइने भी बनी हुई दिखाई दे रही है।

यहा एक जगह है उस जगह पर एक टोकरी रखी हुई है टोकरी के अंदर कही प्रकार के डब्बे हुए और समान भी रखे हुए दिखाई दे रहे है।